इसके बगल में एक घर है। इसके अन्दर आप जा सकते हो। और उसपे सटर लगा हुआ है। देख भी सकते हो।